और कुछ लोग पत्थर पे बैठे इस नजारे का मनोरंजन लेते हुए नजर आ रहे हैं।

इस चित्र मे शेर दिखाई दे रहा है।

यह चित्र में काफी बड़ा बंगला नज़र आ रहा है जोकि हरे कलर का न दिखाई दे रहा है। इसमे बहोत सारे खिड़कियाँ नज़र आ रहे हैं।

यह चित्र में एक नदी दिखाई दे रही है जिसके सामने कुछ बगुले भी उड़ते कुछ नदी में दिखाई दे रहे हैं एक नांव भी दिखाई दे रहा है।

यह चित्र में एक लाल कलर की रेल गाड़ी जाती हुई नजर आ रही है जोकि पटरी पर से गुजर रही है और उस के आजू बाजू मैदान नजर आ रहे है।

और यहां पे क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा।

यह चित्र में बोहोत सारे लैपटॉप नज़र आ रहे हैं जो --

ऑटो के सामने कुछ स्कूटर होंडास नज़र आ रहे --

जहाँ पे कुआँ बनना स्टार्ट है जिसके सामने बहुत सारे पत्थर भी रखे नज़र आ रहें हैं।